एक बच्चे उरे बैठे हैं और कुछ बच्चे परब बैठे हुए हैं।

फूल खरीदने के लिए कुछ व्यक्ति कुछ बच्चे कुछ महिलाएं आए हुए हैं।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

कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और कहीं सारा सामान दिखाई दे रहा है।

यह एक डॉक्टर की दुकान है।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

और बाहर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और बाइक दिखाई दे रही है।

और पानी के जग दिखाई दे रहे हैं।

और एक अंदर जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

लाइटे भी जल रही है।

और गैस सिलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ टीचर बाहर खड़ी हुई है।

अंदर कमरे में पंखे दिखाई दे रहे हैं और कई सारे चाल्ट भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें कुछ बच्चे कुछ व्यक्ति कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

आठ तकिए दिखाई दे रहे हैं।

और वूफर भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

और एक झंडा दिखाई दे रहा है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सुनार की दुकान है।